यह एक नीला सा भी कुछ दिख रहा है और आस पास में काले-काले से भी दिख रहे हैं ।

जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पे बोहत पुराना मकान दिख रहा है उसमें एक गाड़ी जा रही है।

जैसे की आप यहाँ देख रहे हैं सामने एक मोटा सा पत्थर सफेद रंग का पड़ा हुआ है।